अच्छा और बहुत ही बड़ा कपड़ा का मॉल है।

अच्छा लगता है इस जगह पे --

हम लोगों को खरीदने में--

लोग इस तालाब में नहाने के लिए आते हैं और इस तालाब मे--

यहां टेन इलेवन ट्वेल्व और ग्रेजुएशन कंपटीशन का बुक --

हम लोगों को जिम करने में--

ऑनलाइन फॉर्म भरा जाता है।

फूल का दुकान है जो कि यहां--

ये यहां एक बहुत ही पुराना और अच्छा--

ये एक स्विमिंग पूल है जो कि --

स्विमिंग पूल में नहाने में--